इस पर प्लेटफार्म नंबर बारह का टैग भी लगा हुआ है। लाइट जल रही है।

यहाँ पर एक झरने को दिखाया गया है जिसमें से कि झरना नीचे की तरफ एवं --

झंडा लगा हुआ है और बाहर एक सीढ़ी खड़ी है।

ये एक पहाड़ी इलाके का दृश्य है जिसमें हरी भरी घास कुछ छोटे-बड़े घर --

और उसमे लोग भी सवार है। पीछे हरे-भरे पेड़-पौधे हैं और ऊपर खुला आसमान --

गुलाबी और सुनहरी पत्तियां दिखाई गई है जिसमे बैगनी --

पार्क के आउटर लाइनिंग में हरी घांस अच्छी तरीके --

इस चित्र में एक दुकान के द्रश्य को दिखाया गया है। जिसमे की ऊपर पेप्सी और नीचे पानी कुछ कुरकुरे एवं --

ते पोता गया है तथा बच्चों को खेलने की सुविधा भी है।

पिले रंग की शर्ट एवं गुलाबी रंग की पैंट पहनी हुवी है। यह किसी एक गड्ढे के --

यहाँ पर किसी स्टेशन के बाहर एक हरे रंग का टेम्पो एवं एक नीले कलर के दिखाया गया है।

दोनों ज़ेब्रा काफी मस्त रूप से घास चर रहे हैं बाहर एक लोहे की जाली की --

ये हाथ में नाव चलाने के लिए एक एक दंडी हाथ में है।

एक युवक ने सफ़ेद शर्ट पहनी है तथा दूसरे युवक ने आसमानी कलर की शर्ट पहने हुए है।

एक पुरुष बल्ले के ऊपर बैठा है ग्राउंड में कुछ जगह पर हरी घास हैं।

यहाँ पर एक मंदिर को दिखाया गया है जिसके उपर लाल कलर की झंडी लगी हुई है।